ऊपर में पेंसिन भी दिखाई मिल रहा है।

साइड में इयरफोन का कवर दिखाई मिल रहा है।

हमको इस तस्वीर में हाईवे दिखाई दे रहा है।

मुझे आसमान में काफी सारे बा काफ़ी सारे बादल दिख रहा है।

दीवार के अंदर मुझे एक बड़ा सा पिंक कलर का घर दिखाई दे रहा है।

खिड़की भी दिखाई मिल रहा है लाइट भी दिखाई मिल रहा है।